यहां पर तीन व्यक्ति दुकान पर कुछ खरीद रहे है।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

दो पीले रंग की क्रेन दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कंस्ट्रक्शन साइट की नजर आ रही है।

यहां पर सेल सर्विस रिपेयर होती है।

अनानास दिखाई दे रहा है वे बहोत सारे तरबूज नजर आ रहे हैं।

फोटो में जस्ट राइट में एक आदमी टोपी पहने नजर आ रहा है जिसे यह सर्दी का दृश्य प्रतीत होता है।

एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है वे कुर्सी भी दिखाई दे रही।

जिसके ऊपर हरे रंग के अक्षरों में वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा द्वारा संचालित लिखा हुआ है।

और सफेद रंग के पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।

वे कांच से बाहर बहोत ही सुंदर हरे भरे पेड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है।

वे छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक लाल वस्त्र पहने एक डमी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति अपने ढूंगे पर हाथ रख के खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है।

ओम नमो नारायणी मंदिर की दिखाई दे रही है।

कुछ लोग जमीन पर बैठे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो तीन काले रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर एक दुकान की नजर आ रही है।

खंभे पर किसी का नंबर भी नजर आ रहा है।

पुलिस एकेडमी की है यहां पर बच्चों को हरियाणा पुलिस की तैयारी करवाई जाती है।